यह शिमला में स्थित जाखू मंदिर है।

यहाँ पे रोड हैं और साथ मैं लोगों को बैठने के लिए--

साथी है नीचे को यहां पे अग्निशमन का--